क्योंकि ये लोहे का बना हुआ है।

फूल भी दिखाई दे रहा है जहां पर शटर बंद--

चारों तरफ मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है और यहां पर बहुत सारे पानियों का ढेर लगा हुआ है।